होटल है यहाँ पर कुछ लेडिस कुछ जेंट्स वगैरह बैठे हुए हैं टेबिलों पर और एक जेंट्स है अपनी पिक्चर्स ले रहे हैं उनके साथ एक बच्चा खड़ा है उनके गले में मफलर डला हुआ है कांच लगा --

ये एक गुम्बंदे हैं गोल्डन कलर की इसके पास पानी है ।